यहां पे हमें गुलदस्ता भी दिख रहे हैं।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

जूस एंड शेक ऐसा लिखा हुआ रेस्टोरेंट दिख रहा है।

यहां नीचे में एक आंटी बैठी हुई है।

यहां पर हमें बच्चों के खेलने के झूले दिख रहे हैं।